तौलने के लिए सामान रखा हुआ है।

रखे हुए हैं। एक दीवार पर रखे हुए वास बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। पीछे हमें एक बच्ची भी दिख रही है और उसके बगल में एक कुर्सी भी रखी हुई है।

कबर्ड बोहत ही अच्छा दिख रहा है। एक ठो यहां पे एक क्लॉक भी दिख रही है।

इस फोटो में कार खड़ी हुई दिख रही है जो कि सादी में जाने के लिए बोहोत ही अच्छी तरीके से सजाई गई है।

एक अटैची भी रखी हुई है। एक मेज़ के ऊपर इन गिलासों को बहोत ही अच्छे तरीके से रखा गया है।

चॉकलेट टंगी हुई है। डिब्बे मे कई तरह के सनैक्स भी रखें हुए हैं। टॉफीयां भी रखी हुई हैं। एक इंसान इनको बेचने के लिए बैठा हुआ --

अ पीछे कई तरह के पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं। जमीन पे पत्तियाँ गिरी हुई हैं।

और इस पे एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ है अ और छत पर पंखा टंगा हुआ है और लाइट भी लगी हुई हैं। जमीन पर टाइल्स भी हैं।

यह एक ट्रेनर की तस्वीर है जोकि एक गेंद के ऊपर पैर रखकर पुशअप मार रहा है साइड में एक डंबल भी पड़ा हुआ है और --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

इसके आसपास कोई नहीं दिख रहा है। पीछे बहुत ही अच्छा पेड़ दिख रहा है।